बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है और यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जो की नीले रंग का है और इसमें वाइट अक्षरों से बदायूँ रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है।

बहुत बड़ा मैदान नजर आ रहा है जोकि पीले पीले रंगों और फूल से सजा हुआ है यहां पर एक स्टेज बना हुआ है।

यहाँ पर एक मेडिकल की दुकान भी दिख रही है जिसमें बहुत सारा सामान है यहाँ पर एक बिल्डिंग भी दिख रही है जोकि सफेद कलर की है यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं कुछ दुकानें बंद नजर आ रही हैं।

और यहाँं पर पीछे की और कुछ मकान भी देख रहे हैं और एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है। जिसमें आर.पी.एफ. लिखा हुआ है येलो कलर से और यहाँं पर एक बड़ी सी ट्रेन भी जा रही है। कुछ ट्रेन की पटरियां भी दिख रही हैं।

और यहाँ पर बहोत सारी डेकोरेशन की गई है। कुछ गुब्बारों से की गई है और यहाँ पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। एक यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। कुछ लाइटें भी जल रही हैं।

और यहाँ पर कुछ बैठक व्यवस्था भी दिखाई गई है और यहाँ पर छत पर टिन शेड भी लगे हुए हैं। कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहें हैं। बड़े-बड़े खंभे भी दिखाई दे रहे है और एक रेल की पटरीयां भी गई हुई हैं यहाँ से।

सा ग्राउंड नज़र आ रहा है और रात का समय नज़र आ रहा है यहाँ पल दीवाल की बॉउंड्री है और यहाँ पर कुछ टेबल कुर्सी रखी हुई हैं।

और यहाँ पर भाइट कलर के दो पंखे नज़र आ रहे हैं कुछ पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मैदान में घास लगी हुई है जो की ग्रीन कलर की दिख रही है कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही --

और यहाँ पर कुछ अलमारी बनी हुई हैं। अलमारी में कुछ सामान रखा हुआ है और बाहर की और एक गेट बना हुआ है। बाहर की गेट की और एक रेलिंग लगी हुई है।